यह एक रोड है इस रोड पर बहुत सारे दुकानें है और उस साइड में बहुत सारे वाहन भी जा रहे हैं।

और ऊपर बहोत सारी लाइट की लाइने भी जा रहे है।

कुछ और बैग भी वहां पर रखे हुए हैं।

यह एक कालेज है इस कालेज के बाहर तीन चार पेड़ लगें हुये हैं।

और साइड में एक पेड़ और कुछ हरी हरी घासें लगी हुई हैं।

यह एक वर्कर लड़का खड़ा हुआ है इसने मजदूर की ड्रेस पहने हुए हैं।

यह एक अकेडमी का गेट है इस गेट के साइड में एक छोटा सा गेट लगा हुआ है।

और उनसे सबसे आगे एक आदमी कुर्सी के धरो जा रहा है और एक लोहे का गेट भी बना हुआ है।

और उनके अंदर बहुत सारे गत्ते के बॉक्स रखे हुए हैं।

और साइड में कुछ शीशे के विंडो भी लगी हुई है।